यह फोटो में एक कैप है इसमें चाय पिलाता है रोल जूस सब सब खाने पीने का बहोत चीज सब है ड्रॉल है।

यह फोटो में बहोत चीज सब देखकर बहोत अच्छा लग रहा है बोर्ड है स्विच है लाइट है बल्ब है ए_सी है तार है।

कुर्सी है टेबुल है वाशिंग मशीन है बहुत चीज अच्छा अच्छा देखकर यह सब अच्छा लग रहा है सुंदर सुंदर चीज है बहुत तरह तरह की चीज सब है।

यह फोटो में बहोत आदमी है पढ़ रहा है टेबुल है कुर्सी है बैग है पंखा है कैमरा है लाइट है।

यह फोटो में बड़े बड़े स्कूल है टेन प्लस टू बच्चे लोग पढ़ते है शीशा है गेट है बॉल लगे हुए है पंखा है घास है बदल है।